यहाँ पस छ: महिलएं खड़ी हुई है।

जिसपे बैगनी और नौरंगी फूल लगे हुए है जिसपे पौधे भी लगे हुए है जिसकी घास काली दिख रही है ।

बाजार के सामने चप्पले रखे हुई हैं।

उसपे पांच लोग बाइक खड़ी हुई है जहां पे एक पेड़ की छाव आ रही है।

वो लड़के हरे रंग के पायदान पे खड़े हैं।

वहाँ पे पेड़ भी लगे हुए है आसमान का रंग स्लेटी --